यह कंकाल मानव कंकाल है इसके पीछे एक बड़ा सा पडदा है।

इसके पीछे कुछ बड़े बड़े पेर है औड़ वह--

यह पिक एक डिजाइन दार फुटेज है और इसके सामने में कुछ दीवाल है जोकि येलो कलर से किया हुआ है।

यह खटाल के अंदर समान रखा हुआ है।

कुछ नहीं है साइड मे दीवाल में एक ए_सी टांगा हुआ है।

यह पिक पिक्चर बहुत बड़ा ग्राउंड का है इसके अंदर में कुछ आदमी लोग घूमते फिरते हुए दिखाई दे रहे--

यह बहोत बड़ा मकान में है और इसके नीचे में कुछ पानी जमा है जो की देखने में अच्छा नहीं लग रहा है।

यह फोटेज एक बड़े से इस्टोर का है जिसमें की एस्पराइट का छापा बना हुआ है और सामने में फ्रिज रखा हुआ है।

इश्क में कोई भी आदमी खरा नहीं है और यह देखने में काफी खूबसूरत दिख रहे हैं।